बड़े-बड़े पेड़ हैं। बिजली के खंभे हैं।

इस पिक्चर में कुछ बच्चिया नाचते हुए दिखाई दे रही हैं। यह स्कूल के विधार्थी लग रही हैं।

दुकान भी हैं। एक पेड़ है बिजली के खंभे भी हैं।

इस पिक्चर मे सामने एक दुकान दिखाई दे रहा है। दुकान में --

बहार लकड़ी के बास लगे हुए हैं। एक बड़ा पेड़ भी है।